इन लेडिसो ने वाइट कलर के कपड़े एंड स्वेटर पहन रखी है।

साथ ही इसमें मैदान भी है और यह लड़का उस नाव पे खड़े होके फ़ोटो निकलवा रहा है।

यहाँ पे बहुत से लोग वहां अपने-अपने वाहनों से जाते हुए नजर आ रहे है। एक स्कूटी पे बैठे हुए है तो कुछ बाइक पे बैठे हुए हैं और कुछ ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं।

तो और इसने मेहरून कलर की स्वेटर पहनी है साथ ही स्टॉल डाला हुआ है।

यह एक गार्डन है जो की डेकोरेट की गई है यहाँ पे दो लड़के खड़े हुए है साथ ही बोहोत से लोग अंदर की और प्रवेश क्र रहे है।